अ- एक कैफ़े दिखाई दे रहा है कैफ़े के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है द क- द सिटी कैफ़े सामने एक आदमी खड़ा हुआ है अ-इसके साइड में दो चेयर डली हुई हैं आदमी जहाँ पे खड़ा हुआ है वहाँ पे ग्रीन कलर का मैट बिछा हुआ है।

एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है उसके सामने सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है रास्ते में बहोत सारा कचड़ा सा डाला दिखाई दे रहा है।

चार आदमी कुर्सी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ साइड में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं सामने एक खिड़की दिखाई दे रही है इसमें नीला बैकग्राउंड --